यहां में पीछे में ये बागान के पीछे में एक बाइक ब्लू पार्किंग करके--

घर लोग का साइड साइड में बरा बरा पहाड़ दिखाई दे रहा है और धूप आने वाला दिखाई दे रहा है।

यहां हमें बींस दिखाई दे रहे है स्वीट पोटेटोज देख रहे है चिलीज देख देख देख रहा है बहुत सारा देख रहा है ऐसे देख--

यहां एक बड़ा सा हाईवे जैसा भी लग रहा है पीछे साइड में गारी बाइक आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

लड़की के पीछे में दो ठो व्हाइट कपड़ा से ढक के एक ठो चेयर भी दो ठो चेयर भी दिखाई दे रहा है।

साइड में स्किपिंग करने वाला भी टंगाके दो ठो दिखाई दे रहा है एक ठो ब्लू एक ठो रेड दिखाई दे रहा--

सामने में एक कुछ डब्बा जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां में मुझे बड़ा सा हाईवे देख रहे हैं जहां में बहुत सारा लोग आदमी लोग कार लोग चल के देख रहा है।

हाईवे के किनारे में मुझे एक पोस्ट दिखाई दे रहा है बड़ा से जो की डिजाइन से बना हुआ है।

उसको ऊपर में ओल्ड टाउन कैफे एंड रेस्टोरेंट लिख के है।

उसका नीचे में एक घर लोग दिखाई दे रहा है।

या मुझे एकदम फ्रेश सा नजरा दिखाई दे रहा है जो की बहुत सुंदर दिख रहा।

गणेश का फोटो को पूरा सजा के रखा हुआ है ये कुछ टेम्पल है।

यहां में सामने में एक टेबल भी दिखाई दे रहे हैं जहां में उसके ऊपर टॉवल रख के भी है।

घर का ऊपर में दो माइक बड़ा से लगा के है।